सामने मैदान है मैदान में हरे-भरे घास है बिल्डिंग के ठीक सामने एक पेड़ --

सामने एक मैरिज हॉल नज़र आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है सामने टेबलों को और चेयर को लाल और सादे कपड़े से बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है।

एरोप्लेन के सामने कुछ यु.एस. बंगला लिखा हुआ है।

यहाँ एक सामने में बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के ठीक नीचे एक स्टेज में रखी हुई है।

साइड में एक बोहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं| साइड में गाड़ी भी रखे हुए हैं ।

ये एक व्हाइट कलर का पंडाल है। पंडाल के ठीक सामने काली माता का मूर्ति रखा हुआ है।

यहाँ एक बड़ी-सी ब्लू कलर की नदी नजर आ रही है। लगता है यहाँ बाढ़ आई थी। सामने एक ईटे का बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

दीवार के पीछे एक लैंप या फिर एक लैंपपोस्ट लगी हुई है दीवार के पीछे मैदान भी है।

सामने देखकर लगता है कि ये किसी जिम का हिस्सा है क्योंकि यहाँ जिम के सामान रखे हुए हैं।

घर का रंग पीला और सादा है। घर में फॉल्स सीलिंग की गई है। घर के नीचे पीले रंग का कारपेट भी बिछा हुआ है।

सामने में दो दुकान नजर आ रहे हैं। एक दुकान के सामने दो बाइक भी रखे हुए हैं और चेयर भी रखा हुआ हैं।

गेट के ठीक ऊपर कलचल किसनगंज लिखा हुआ है। गेट के दूसरी ओर एक पीले और लाल रंग का बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।